ये तस्वीर एक पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट --

इस पर श्री हनुमान ज्वेलर्स --

ये फोटो बहोत सारे लोगों की है यहां वो लोग कंप्यूटर पर भी कुछ काम--

जो लाल रंग के पोस्टर से सजा हुआ है।

ये फोटो एक नर्सरी की है यहां बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं।

एक पतीले में टमाटर भरे हुए हैं।

हनुमान जी की भी एक तस्वीर दिख रही है।

अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कैमरे रखे हुए हैं।

इनके अलावा भी ये काफी साफ--

ये फोटो एक बहोत बड़ी शॉपिंग मॉल की है।

जहां पर एक ए_सी भी लगा हुआ है।

टाइलों से बनी हुई यह सड़क पर--

ये फोटो बहोत सारे लोगों की हैं।

ये फोटो एक पारक की है।

ये फोटो बैंक और पोस्ट ऑफिस की है।

ये फोटो कुछ लोगों की है।

ये फोटो एक अजीब से इलाके की है।

ये फोटो लोगों की झूटी प्लेट की है।

ये फोटो एक वेडिंग का है यहां पर काफी अच्छी साज सजावट--

ये तस्वीर एक दुकान की है।